जैसे की हम देख सकते है कि यहां पर हमें दो ब्रिज नजर आ रहे हैं एक ब्रिज का हमें सिर्फ ग्रिल नजर आ रही है जोकि लोहे की बनाई गई है व्हाइट कलर का पैंट किया गया हैं | सामने की तरफ हमें दो पिलरस नजर आ रहे हैं ।

कर तो यहाँ पर हम देख सकते है कि यहाँ पे हमें काफी सारा पानी देखने को मिल रहा है।

हम एक बड़े से हॉल को देख पा रहे है जोकि इस टाइम इसमे हॉल मे अ रोशनी आ रही है अ दिन की और हम देख प रह है इसमे हमे अ खिड़किया देखने को मिल रही है बड़ी-बड़ी सी तीन।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

देख हमें बोहोत बड़ा हॉल देखने को मिल रहा है। हॉल में जो है वो क्रीम कलर से पेंट किया गया है। हम देख सकते हैं कि वहाँ पे काफी सारी विंडोज़ बनी हुई हमें नजर आ रही हैं।

बात करें तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ग्रीन कलर की एक बाउंड्री हमें नजर आ रही है जिसमें छोटी-छोटी विंडोज़ सी बनी हुई है ग्रिल सी और हम देख पा रहे सामने की तरफ हमे व्हाइट बिल्डिंग नजर आ रही है जो की दो से तीन मंजिला बनी हुई है।